और ये येलो कलर और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन मे बनी हुई है और जिसपे एक यहाँ पे बड़ा सा गेट लगा है।

हा जिसमे एप्पल ऑरेंज बनाना सभी प्रकार के फ्रूट्स --

और और राउन्ड शेप मे देकर स्लाईड बनी हुई है अ पूल मे--

और यहाँ पर फाउन्टन फेन मे बहुत सारी लाइट लगी हुई है और ज--

सब्जी म का दुकान लगी हुई है जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है ट्रे क्रेन में --

और जिसके किनारे बहुत सारी नांव रखी हुई है पड़ी हुई है कुछ उलटी नांव पड़ी हुई है।

बहोत सारे रखे हुए है यहाँ पे पड़े हुए है स्क्रू --

अं अ डलिया मे रखे हुए है कुछ मछलियां --